यहां पर हम एक हॉल देख रहे हैं | हॉल में कुछ कुर्सी बेंच पे एक चेयर दिख रही हैं जिस पर --

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अलवरी अलमारी टाइप की है और साइड में ड्रेसिंग टेबल लग रही है।

यहाँं पर एक क्यू_आर दिखाई दे रहा है जो कि क्यू_आर को स्कैन किया जाता है। वो दिख रहा है उस पर एक लड़के की पिक भी दिखाई दे रही है।